गोहाना वाले माथु राम की शुद्ध देसी घी की जलेबियां मिठाइयां हर समय तैयार मिलती हैं यहां पे।

ये आदमी नाव में बैठे हुए हैं और यहां--

इसमें यहां पे रंग की है और उसकी गुलाबी भी दिख रहा है।

चारों तरफ पे पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं और बीच का रास्ता कच्चा है और यहां पे आप देख सकते हो कि ये --

यहां पे आप देख सकते हो ये आसमान है और यहां पे--

और यहां पे इमेज है और यहां पे आप देख सकते हो कुर्सियां भी लगी हुई हैं यहां पे।

यहां भी एक है।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

और यहां पे आप देख सकते हो हेअर एक्सपर्ट लिखा हुआ है यहां में से लिखा हुआ है।

बेकरी लिखा हुआ है यहां पे आप देख सकते हो।

ये बड़ी बड़ी मशीन रखी हुई हैं। यहां पंखे भी लगे हुए है। यहां पे आप देख सकते हो।

बैंक है यहां पे बाइक भी खड़ी हुई हैं देख सकते हो आप यहां पे बहोत सारी बाइक खड़ी हुई गाड़ी खड़ी हुई--

यहां पे आप देख सकते हो रोयाल ज्वेलर्स लिखी हुई है गोल्ड डायमंड सिल्वर दिख रहा है यहां पे ये--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

लाइट पर बंद है यहां पे गडा भी रखा हुआ है कोई कुर्सी भी रखी हुई है।